इस फोटो में यहां सामने देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन है लिखा हुआ हैं श्री--

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं एक दरवाजा दिख रहा है।

पीके पानी की बोतल रखी हुई है टेबल है।

अ बैड है उसकी गद्दी जो है वो येलो कलर की है।

इस फोटो में खोल दिखाई दे रहा है यहां पर जो फर्श है उसपे पत्थर डाला हुआ है बाहर कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

ठीक है और यहां पे पत्थर डला हुआ अंदर की तरफ--

सामने लिखा आई_पी_एस आईलेड्स प्रो एस_कूल ठीक है नीचे लिखा हुआ है यहां पर--

यू_के यू_एस_ए ऑस्ट्रेलिया कनेडा ये हर जगह का मतलब वीजा पासपोर्ट बनाते हैं।

देखो बिल्डिंग पे लिखा हुआ ओडेट भवन हरियाणा ठीक है।

और वह दो लैपटॉप है मतलब एक लैपटॉप वो चला रही है और एक ऐसे ही रखा हुआ है।

ठीक है नीचे ड्रावर्स बने हुए हैं और--

इस फोटो मे देखो यहाँ बाइक्स खड़ी हुई है कुछ एक्टिवा भी है हेलमेट लगे हुए है और यहाँ पे देखो अमूल ओमुल लिखा हुआ है।

देखो मिट्टी है घास है ठीक है।

घड़ी लगी हुई है दीवार पर देखो लाइट्स लगी हुई है।

सामने दो लड़के खड़े दिखाई दे रहे हैं और यहां देखो--

और देखो दो यहां पर तीन यहां पे बाइक है। एक पंजाब की बाइक है क्योंकि देखो पंजाब का नंबर लगा है।

ये स्टेशनरी की दुकान हैं देखो पीछे ना कितनी सारी किताबें हैं डोम्स की पेंसिल पेन शोपनर रेज़र --